दिखाई दे रहा है साका बगीचा है इसमें एक अ दो तीन गाड़ी खड़ी हुई है एक जेनरेटर रखा हुआ है इसमें अंदर एक शटर लगी हुई है इसमें भी बगल में भी एक शटर है इसम में एक गाड़ी खड़ी हुई हैं।

यहाँ हमको एक रिक्शा दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमको ब्लू कलर का रिक्शा दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमको सीमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर हमको --]